यह एक चर्च का सीन नजर आ रहा है| ये चर्च बाहर का सीन नजर आ रहा है| बड़ा-सा स्टार बना हुआ खिड़की में म- मदर मेरी की स्टेचू लगी हुई है।

फंक्शन हो रहा है| एक छोटे बच्चे को गोद में ली हुई महिला उसके बड्डे में आते हुए नजर आ रही है| सामने बहुत बड़ा केक रखा हुआ है और ब टेबल को बैलून बैलूनों से सजाई हुई है और-और भी कुछ गेस्ट आए हैं अपने बच्चों को लिए हुए आए हैं।

जे नदी बहुत साफ़-सूतरी लग रही हैं और नदी के बीचो-बीच नौका ये बहुत ही खुबसूरत-सा सीन देखने को मिलने लग रहा है।

यहाँ ये बुक स्टोर में हर तरह की किताबें मिलती है| सामने एक सेल्समैन है और यहाँ ये हर तरह का बुक यहाँ पे हर प्रतियोगिता की बुक यहाँ पे मिलती है।

बहुत बड़ा नदी है नदी पे सीढ़ी पे एक व्यक्ति पीछे से अपना फोटो क्लिक कराते हुए दिख रहा है| ये ठंड के समय जैकेट टोपी और शूज पहन रखा है| सामने बहोत बड़ी-सी नदी नजर आ रही है।